यह एक शॉप की तस्वीर जिसका नाम बिनेश मेका मार्क यहां पे व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

यहाँ पे बहोत सारे पोस्टर भी लगे हुवे हैं यहाँ पे बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहां पर रखे हुए यहां पर एक लेडिस खड़ी हुई है और यहां पर बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारी मशीनें रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है।

बहोत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं और एक मकान बना हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

कटोरिया रखी हुई है यहां पे बहोत सारी डिश रखी हुई है।

यह एक मंदिर की तस्वीर है यहां पे मंदिर बनाया हुआ है।

बॉक्स रखा गया है। सामने एक बेड बैग रखा हुआ है यहां पे बहोत सारे दवाइयाँ राखी गई हुई है और यहां पे सिसी का --

और यहां पे बहोत सारी लाइट लगाई गयी है रंग बिरंगी।

यहां पे ट्रैक्टर जा रहा है सामने ओर वहां पे एक आदमी जा रहा है। सामने बहोत सारे घर बने हुए है।

ओर भी बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

यहां पर शीशा वाला दरवाजा जो कि बंद है बाहर बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और उस पर वाइट कलर का पेंट किया गया है।

ये क्लीनिक कसी है यहां पे ब्राउन कलर --

किया गया है यहां पे कांच के दरवाजे लगे हुए हैं यहां पे वाइट कलर की स्कूटी खड़ी हुई है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पे एक बोर्ड डाला हुआ है जिसपे नो पार्किंग लिखा हुआ है यहां पे काले कलर की सीढ़ियां लगाई गई है यहां पे बहुत सारी खिड़कीया लगी हुई है।

कोलगेट बुरुश और भी बहोत सारी चीजे रखी हुई है यहां पे एक कुर्सी रखी हुई है और एक आदमी यहां पे बैठा हुआ है।

यहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

रंग बिरंगी लाइटे लगाई गई है और स्टेज पर दो लड़के--

और यहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है।

यहां पे बहोत सारे रूम बने हुए हैं और सामने --

यहां पे बिजली का बोर्ड लगा हुआ है इसमें से बहोत सारी तारे आ जा रही है।

थी एक दुकान की तस्वीर है यहां पे।

रूट भी है यहां पे दो चेयर रखी हुई है बैठने के लिए--

इसे व्हाइट कलर से पेंट किया गया हैं।

यहां पे एक लड़का आ रहा है यहां पे एक मा जी जा रही हैं पर बहुत सारी बाइके और साइकिल खड़ी हुई है।